यहां पे एक बोर्ड भी है स्विच बोर्ड और यहां पर बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा सीसा वाला है और यहां पे नीचे फरश में बहुत सारी टाइल्से लगाई हुई हैं।

अ एक गली का फोटो है यहां पे बहुत सारी घरे हैं।

यह एक रेलवे ट्रैक है जिस पे एक रेल खड़ा है रेल का कलर पीला हरा और ब्लू है।

एक सोफ़ा है पीले रंग का--

यह एक कार गैरेज है जिसमें एक कार खड़ी हुई है जिसका कलर लाल है।

बहुत बड़ी बड़ी करकटे लगाई हुई है।

यह एक रूम है। जिसमें दरवाजा काला रंग का लगा हुआ है। यहां पर एक ऐ_सी है। जिसका कलर उजला है।

यहां पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की चीज रखी हुई है।

बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पर दो आदमी है।

एक रोड है यहा पर छोटे छोटे घास है।

यहां पर बहोत सारे इंसाने खड़े हुए हैं सब गंजी पहनी हुई है।

यहां पर पर्दे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है जिसमें एक फ्रिज रखा हुआ है।

यह एक बजरंगबली का मंदिर है बजरंगबली पर बहुत सारे फुलें रखी हुई हैं।

घंटी रखी हुई है और यहां पर एक पोस्टर भी है।

एक स्विच भी लगा हुआ है यहा पर एक तार भी है।

बहुत सारे डिब्बे रखी हुई हैं जिसका कलर ऑरेंज और पीला है।

एक घर ऊपर बहुत बड़ा टंकी रखा हुआ है।

घर का कलर पिला है और उसके पीछे रेलिंग भी दी हुई है।

यह एक बाथरूम का फोटो है बाथरूम में एक झरना लगा हुआ है।

यहां पर एक मिक्सर मशीन है।

यहां पर बहोत सारी पत्थरें हैं यहां पर बहोत सारी घास फूस है।

कुर्सियां है लाल रंग की और टेबले हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है। रेस्टोरेंट में बहुत सारे आदमी है।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और यहां पर बहुत सारी टीबीया लगी हुई है।

चाय बन रही है और यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

और सारे घास फूस है यहां पर एक रोड है जिसमें दरार है।